ये आई.डी.बी.आई. बैंक का ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है जो की बंद इसका डोर बंद दिखाई दे रहा है पेंपलेट --

मुझे एक मार्केट का फोटो दिखाई दे रहा है जहाँ पर बाहर की ओर सब्जी बिकती हुई दिखाई दे रही है बैंक दिखाई दे रहे हैं बड़ी-सी बिल्डिंग में और कुछ छोटे-छोटे से घर दिखाई दे रहे हैं।

और फ्रिज दिखाई दे रहें है जिसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरा है तेल की कुपियाँ दिखाई दे रहीं है कैरेट में कुछ सामान रखा हुआ है।